और कुछ बड़े-बड़े भी वृक्ष यहाँ पे नजर आ रहे हैं हरे भरे और देखने मे काफी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे छोटे-छोटे लाइट भी लगे हुए हैं।

और यहां पे एक उसके पास मे नदी भी है बोहोत बड़ी और वहां पे छोटे-छोटे घास भी हैं।

बोर्ड लगा हुआ है जिसमे काल सेतु करके लिखा हुआ है। इसके नाम --

इस पिक्चर मे एक कॉफी शॉप नजर आ रही है सामने मे जो कि चॉकलेटी एण्ड घिया कलर की है।

और यहाँ पे एक हरे रंग की बोर्ड नजर आ रही है जहां पे आगे के रास्ते --

कलरफुल बलून के साथ बलून का कलर लाल पीला काले रंग का है।

जो की उसका कलर है। क्रीम कलर का बिल्डिंग है और उसमे ब्लू कलर की बालकनी है। अच्छी लग रही है देखने मे काफी।